और मुझे बाइक जो रॉयल एनफील्ड बाइक दिखाई दे रहा है चार जैसा--

उसका बाहर पे एक गाड़ी ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है और एक लड़का का माथा भी दे दिखाई दे रहा है।

बैठने के लिए सीट भी लकड़ी से बनाया बनाया हुआ वाला सोफा सेट है।

इसमें टेबल दिखाई दे रहा है टेबल का ऊपर मे एक पेपर जैसा दिखाई दे रहा है और--

इस पिक्चर में इंसान लोग पत्थर का ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहा है।

सर्विस और रेनॉल्ट करके लिख के दिखा दिखाई दे रहा है और--

और मुझे ऑडियंस लोग भी बहोत ज्यादा दिखाई दे रहा है और--

और टेबल भी दिखाई दे रहा है और मुझे लाइट भी दिखाई दे रहा है।

वाटर बोतल भी दो ठो दिखाई दे रहा है और पिछे में कस्टमर लोग भी दिखाई दे रहा है।

और इंसान हमको इसमें पांच इंसान दिखाई दे रहा है।